और उसमें चावल है चावल के ऊपर दो चम्मच है और खाली प्लेट पांच प्लेट है।

इस तस्वीर में सामने एक मस्जिद है मस्जिद के सामने औरत खड़ी हुई है कुछ सामान लेकर--

उस नर्सरी में और बहुत सारी बड़े बड़े पेड़ है और एक बाइक है खड़ी हुई और उसकी हैंडल पर एक हेलमेट रखा हुआ है।

सामने से एक आदमी आ रहा और एक पेड़ भी है और एक गाय भी उधर खड़ी हुई है और एक --

इस तस्वीर में एक छोटा सा किला है किला के ऊपर हरे --

सामने एक छोटा सा गमला है गमला के पास कहीं बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और व्हाइट कलर का छाता भी है।

और बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं और एक औरत भी खड़ी हुई है साड़ी पहन के--

इस तस्वीर में बहोत बड़ा गेट है गेट में शिशा लगाया गया है।

इस तस्वीर में बहुत बड़ा झूमर लगाया गया है ऊपर औ --

और फैन भी है इस तस्वीर में और लाइट भी जल रही है और कुर्सी भी पड़ी हुई है और एक आदमी बैठा हुआ --

एक टेबल में गुलदस्ते रखे गए हैं और दूसमें-दूसरे में फूल लगाए गए हैं टेबल भी है।

इस तस्वीर में एक होटल है और इसमें एक औरत बैठी हुई है।

इसमें तीन गाड़ी खड़ी हुई है और एक ऑटो भी खड़ा हुआ है और एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

और रास्ता भी है और दिन का समय है।